ये एक खेल का मैदान है यहां पे तीन लड़के दौर लगा रहे है नीचे हरे कलर की घास है सफेद कलर की लाइने है बच्चों ने ब्लू कलर की पेंट पीली कलर की शर्ट पहने हुई है।

यहाँ मैदान में एक एरोप्लेन खड़ा हुआ है पिले कलर की घास लगी हुई है एरोप्लेन बहुत बड़ा सफ़ेद कलर का है।

ये एक कपड़े की दुकान है। एक डमी खड़ी हुई है ऑरेंज कलर का शूट पहने हुए पीछे बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़े हैं रखे हुए है ब्लू गुलाबी कलर का कारपेट बिछा हुआ है।

पास में एक शटर लगा हुआ है ऊपर डिश टी.वी. का बोर्ड लगा हुआ है।

ये एक शादी हॉल है ये उसका स्टेज है यहाँ पे पीले कलर के परदे बंधे हुए हैं फूल बने हुए हैं खूबसूरत सी कुर्सी लगी हुई है सफेद कलर की।